जिसने सफेद कलर के जूते पहने हुए हैं।

दिख रही है जिसमें कुछ लोग सामान ले रहे हैं।

और एक महिला कुर्सी पर बैठी हुई है।

करते हुए दिख रही है और पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

एक मकान का काम चल रहा है जिसमें एक व्यक्ति --